इस दृश्य मे एक औरत है जो कि डांस कर रही हैं।

यह दृश्य एक बनता हुआ घर का है।

ऊपर में कुछ लाइट जल रही हैं जिसका कलर व्हाइट है।

इस दृश्य में सामने तीन कार नजर आ रहे हैं एक कार का कलर ब्लैक एंड व्हाइट है और एक कार का कलर ब्लैक है।

अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसका कलर ग्रीन है।

कपबोर्ड का कलर पर्पल और व्हाइट है।

आगे में एक चेयर है जिसका कलर ब्लैक --

ये वाले बेसिन का कलर ब्राउन व्हाइट रेड है।

यहां पे सामने में बहुत सारी बाल्टिया रखी हुई है जिसका कलर ग्रीन व्हाइट ब्लू है।

जिस पे कि छोटे छोटे घास जम चुके हैं।

यह दृश्य एक जयमाला के स्टेज का है।

सोफा है और चार चेयर है।

इसका कलर ब्राउन और ब्लैक है।